शोरूम के आस-पास बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।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

मटर चुकुंदर पपीता धनिया --

ऑरेंज कलर करे हुए हैं ।

बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति रखी हुई है।

लाइटे बहुत सारी लगी हुई है एक पिंक कलर की दिख रही है।

फ्लोर भी है एक फ्लोर पर रेड कलर है ऊपर पिंक कलर है ब्लू कलर है एक पर एक पर है रेड और --